हो चुकी है पूरा आसमान काला पड़ा हुआ है मानो तूफ़ान आ रहा हो एक लेन बनी हुई है जो की सफ़ेद कलर की है वहा पर एक सफ़ेद कलर की स्कूटी भी खड़ी है कुछ लोग इधर उधर जा--

मै मिट्टी का तेल रखा हुआ है| ये ग्लासे टेबल पे रखी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रहे है। एक के ऊपर एक --

यहाँ पर एक बार्बर की दुकान का वर्णन किया गया है जहां पर एक बार्बर एक लडके के बाल काट रहा है। तीन-चार लोग बेठे हुए हैं जिसमे की एक औरत है।

तकिये हैं दो पीले रंग के और दो प्रिंटेड तकिये हैं और एक बड़ा सा तकिया रखा हुआ है। साइड में एक सोफा है पर्दे लगे हुए हैं और लैप लगी हुई है।